सफेद कलर पोते हुए इसमें बड़े रंगीन अक्षरों में लिखो है जगदंबा बोर्ड और इसमे दो इसमें भी लिखा हुआ है इसमे बाजू में कतार में पेड़ पौधे लगे हुए है हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं एक कतार लंबी लगी है बिजली के खंबे दिखाई--

बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह बिल्डिंग लाल कलर से पुती हुई है इसमें सफेद कलर का पट पट्टा डला हुआ है उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

खड़ी हुई है बिजली भी जिसमें लाइट जलती हुई दिखाई दे रही नीचे ये पब्लिक इकट्ठी हुई है वो सारे लोग इस पालकी में झूलने के लिए तैयार खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

सामने टी.वी चल रही है उसमें गूगली लिखा हुआ है सामने सोफे पर एक बहुत बड़ा बड़ी तस्वीर रखी हुई है लड़के की तस्वीर दिखाई दे रही है की बोर्ड रखा हुआ है पानी की बॉटल रखी हुई है नीले कलर की एक किताब नोट बुक रख --

एक नर्मदा मईया का सीन लग रहा है नर्मदा मईया में पानी बिलकुल नीला कच दिखाई दे रहा है और उसके उस पार जिसमे नील किस्ती रंग बिरंगी किस्ती एक लाइन में लगी हुई दिखाई दे रही है नांव दे रही है।

नज़र आ रहा है खुली मैदान बस खड़ी है लगता है बस स्टैंड है और इसके सफ़ेद कलर की है इसमें नीला पट्टा लगा हुआ है उसमें सफ़ेद कलर लिखा है ॐ नमः शिवाय सफ़ेद करे कलर है।